जाे नीले रंग के साड़ी पहने और हाथ में बैग रखी है जो काले रंग का बैग है और जो छत का रंग है वाे हरां है और सामने देख सकते है पीले रंग का छत है।

सामने एक भी के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है जो विराट को पकड़े हुए बहुत सारे नीचे रखी गई है ।

एक लड़का खड़ा हुआ जो कच्चे रंग का शर्ट और नीले रंग का पेंट पहना हुआ है चश्मा लगाए जो काले रंग के चश्मा है।

पर के साइड पर दीवार जो सफेद रंग की है बगल में चौड़ी और लंबी नदी है और अगर बगल घास लगे हुए है जो हरे रंग की घास है ऊपर नील और सफेद रंग की आसमान है।

ये लेकर हुए हे उन्होंने क पगड़ी पहना हुआ हे अंदर के साइड पर बहोत सारी गाड़िया कुछ लोग खड़े हे बाहर के साइड पे गाड़ी रखी गई हे एक आदमी जो अंदर के साइड पे जा रहा हे--

और बाहर बहोत सारी लाइन लगाई हे पील और सफ़ेद रंग की लाइट लगाई गई हे।

सामने कुछ टेबुल के ऊपर कैंडल लगाए गए हैं सामने एक बड़ा-सा दीवाल हैं जो गुम्बज बना हुआ हैं। ऊपर के साइड पे--

ऊपर लाइट लगायी गयी है जो सफ़ेद रंग की काले रंग का बादल है बहुत सारे लोग नीचे के साइड पे खड़ा है।

सामने मछी की दूकान लगायी गयी है जो पीले कलर के कैरट रखा गया है नीले सफेद रंग का है।

पीछे की साइड में एक दीवाल है कुछ पेड़ है जो हरे रंग की पत्तिया सफेद और नीले रंग की आसमान है।

दीवाल का रंग सफेद है तो लाइट लगायी गयी है सामने के साइड पे बहुत सारे कांच लगे हुए है उसके ऊपर कुछ पोस्टर लगाया गए है।

ठी दीवार का रंग सफेद है फर्श सफेद है पीछे का जो दीवार का रंग--

ये घर है अगल-वगल गुलदस्ते लगे हुए है जो हरे रंग की पत्तिया है।

और ऊपर गाइड लगाई गई है सफ़ेद नील रंग के बदल है ऊपर के साइड पेंटर गया हुआ है एक अच्छा नहीं बना जो बहुत साड़ी बाइक गई है।

यहीं जो लकड़ी का है।

एक आदमी जो मिट्टी को बाँट रहा है पेड़ में अगल-बगल पेड़-पौधे है सामने भी एक पेड़ लगा हुआ है जो हरे रंग की पती है बगल में बिल्डिंग है बड़ा सा--

सामने दो खिड़की है सफ़ेद रंग की दीवाल है नीचे सफ़ेद बोरा रंग का पेंट किया गया है।

सामने दो कुर्सी लगाई गई है जो लाल रंग की है बगल में दो आदमी खड़ी हुई है और दीवाल का रंग हरा और बीच में गुलाबी है उसके साइड में सफेद रंग का दीवाल है लाइट लगाई गई है जो एक लाइट जल रहा है सफेद रंग की--